सबसे बढिया है प्रकृति बोहोत सुंदर नजारा दिखा रही है।

बहोत सारा टेबल लगाके रखा है| काफ़ी अच्छा बनाया है दीवार में काफ़ी अच्छा पेन्टिंग किया गया है।